और सामने में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

और सभी का कलर अलग अलग है।

दोनों के हाथ में एक गन नजर आ रही है।

चिप्स और पैकेट लटकाए गए हैं।

और स्टेज पे एक कपड़ा भी बिछाया गया है।

दो तीन टेबल नजर आ रहे हैं।

और एक फूलदान बनाया गया है।

इसमें कुर्सियों पे दो व्यक्ति लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

इसमें काफी सारे कपड़े बाहर टांगे हुए नजर आ रहे हैं।

और नाव के अंदर काफी बड़ा एक जाल रखा गया है।

और एक छोटा सा तालाब भी नजर आ रहा है।

यह एक पानी के फैक्ट्री का दृश्य है।

यह एक कॉलेज फेयरवेल पार्टी का दृश्य है।

पीछे एक बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

इसमें दो घर नज़र आ रहे हैं।

इसमें अरमानी एक्सचेंज लिखा गया है।

और बगल में सीढ़ी भी नजर आ रही है।

मशीन में एक का कलर लाल है।

इसमें काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने की टेबल पे काफी सारे सामान रखे गए हैं।

दीवारों का कलर व्हाइट है।

नीचे जमीन पे फर्श बिछाया गया है।

और काफी सारे बड़े बड़े दरवाजे नजर आ रहे हैं।

इसमें काफी किस्म के फूल नीचे जमीन पर रखी हुई नजर आ रही है।

उसमें कुछ व्यक्ति लोग डांस की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं।

और नीचे की जमीन पे काफी सारे कारपेट बिछाए गए हैं।